यहां पे बहुत सारे चेयर रसे हुए हैं उधर--

यहां पे बहोत सारे डॉल हुए हैं साइड में मोटा सा पाइप रखा हुआ है नीचे में बैट रखा हुआ है।

अंदर में टेबल रखा हुआ ऊपर में फैन लगा हुआ है अंदर में --

क्यू_आर टंगा हुआ है साइड में एक लाइट है रिफ्लेक्शन है ऊपर में फैन लगा हुआ है।

गटर लगा हुआ है उसके साइड में एक--

यह एक पार्क का फोटो है जहां पे एक बच्चा एक टेबल पे बैठा हुआ है।

यहां पे एक मॉल ता इमेज है जहां पे साइड में जूता रखा हुआ है वहीं पर यहां पे छोटे छोटे पैंट रखे हुए हैं साइड में लोअर रखे हुए हैं।

उसके उस तरफ जींस रखा हुआ है नीचे में--

इस इमेज में हमें एक पिलर नजर आ रहा है जिसके ऊपर सोलर लगा हुआ हैं साइड में झूला है वहां पे ये टेबल नजर आ रहा हैं उसके बगल में बहुत सारे पेड़ लगे हुए है।

छोटा सा मखिया यहां पे यार रखा हुआ है ऊपर में फैन लगा हुआ है।

इसके बाहर एक सीढ़ी लगा हुआ है चढ़ने वाला उसके बाहर बहोत सारे लाइट लगे हुए है।

घर नजर आ रहा है उसके बगल में फोर व्हीलर लगा हुआ है वहीं पे--

मोटरसाइकिल लगा हुआ है उसके उधर ये--

पेड़ लगा हुआ है यहीं पे एक--

बकेट रखा हुआ हैं ऊपर में लाइट लगा हुआ है।

एक आदमी के हाथ में हेलमेट है साइड में स्टेयर्स साइड में सीढ़ी बना हुआ है।

वहीं पर एक सी_सी_टी_वी कैमरा भी नजर आ रहा है साइड में ए_सी लगा हुआ है।

नीचे में बहोत सारे टी_वी रखे हुए हैं।

बाल्टि रखा हुआ है साइड में एक झोपडी बना हुआ है।

ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है ऊपर में बहोत सारे लाइट लगे हुए हैं।

रिसेप्शन नजर आ रहा है जहां पे एक व्हाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

वहीं पे एक टेबल है वहीं एक चेयर लगा हुआ है वहीं पे--